यहां बहोत सुंदर किला दिखाई दे रहा है।

यहां ब्लू और परपल मिक्स कलर का है।

यह यहां पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है।

यह क्लासरूम बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है।

जिसके बाहर बहुत सारी कुर्सियां और टेबल दिखाई दे रही है।

यहां पर किसी चीज की शूटिंग चल रही है।

किसी ने यहां पर फोटो खींचा है।